पैशन प्रो बाइक लगा हुआ है हीरो होंडा वैसा--

हरे-भरे वृक्ष है कुछ नारियल के भी वृक्ष है।

रेड कलर से इधर तीर का निशान दिया हुआ है हर पीला लाल--

हरी सब्जी रक्खी हुई है जिसमे लाल-लाल टमाटर है भिंडी है मिर्च है प्याज है।

कपड़ा एक ब्लैक कलर का शर्ट पहने हुए है बीच में पीला है कुछ---

अ पूरे किला है एक गाड़ी का आधा पीछे जो की व्हाइट कलर का है।

ऊपर में कई पिलर पे कुछ रेड रेड कलर का लगा हुआ है।

नीचे कुछ हरा कलर का वृक्ष भी आ चूका है छोटे-छोटे----